उसका पीछे में ब्लू कलर का पर्दा लगा के हैं।

और एक ब्लैक कलर का बैग भी दिखाई दे रहा है।

इसका पीछे में एक ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक पोल भी दिखाई दे रहा है।

और एक आदमी जो येलो कलर का कपड़ा पहन के है।

इसका अंदर बहुत सारा फ्रिज दिखाई दे रहा है।

फ्रिज जो ब्लैक कलर का भी दिखाई दे रहा है।

और उसका बगल में इलेक्ट्रिक वायर भी दिखाई दे रहा है।

एक घर भी दिखाई दे रहा है।

घर का छत जो टीना से बनाया हुआ है।

कमरा के अंदर में तीन आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और बहोत सारा कुर्सियां भी दिखाई दे रहा है।

और उसका पीछे में एक टेबल के ऊपर एक लैपटॉप भी दिखाई दे रहा हैं।

इस तस्वीर में बाजार दिखाई दे रहा है।

बाजार में बहुत सारा आदमी दिखाई दे रहा है।

उसमे बहुत सारा मा फूल का माला टंगा के है।

दो बड़ा सा बिल्डिंग भी दिखाई दे रहा है।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

उसे कमरा के अंदर में तीन आदमी दिखाई दे रहा है।

और एक औरत जो फोन बात करके हैं।

और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

आगे में गोरखा लिख के है।

दांत जो सफेद रंग का है।

और उस घर का पीछे में एक छोटा सा टावर भी दिखाई दे रहा है।

और स्टील वाला कुर्सी भी दिखाई दे रहा है।